बहोत सारे सामान रखे हुए हैं।

जिसमें गाड़ी का सामान सब रखा हुआ है।

यहां एक नदी बह रही है।

क्योंकि यहां पार्टी चल रही है।